यह दृश्य एक दुकान का है और यह दुकान एक बुक डिपो की दुकान है ।

गिजर प्रेस आदि और इनमें अलग-अलग कंपनी के है ।

यह दृश्य एक दुकान का है और यह दुकान एक फलों की दुकान है।

का यह दृश्य है और घर के गेट को हरे रंग से कलर कर रखा है और --

की समाधि का है और समाधि के ऊपर एक --

यह दृश्य एक दुकान का है और यह दुकान एक अंडर गारमेंट्स की दुकान है।

अनेक फ्लैट बनाये हुए है और बिल्डिंग पांच मंजिला --

यह दृश्य एक ग्राउंड का है और ग्राउंड में अनेक बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे है ।